और काँच का शीशा है।

बच्चे डिप्स मार रहे हैं। एक कराटे भी सीख रहे है हैं।

इनके कपरे सफ़ेद कलर का है और --